ये हम देख चुके हैं। हमारे सामने जोकि काफी लोग अपना त्योहार मना रहे हैं।

काफी इससे लाभदायक होता है। इसपे चढ़ के अपना काम मिस्त्री करता है।

अभी लकड़ी का बना इसके ऊपर गद्दा लगाएंगे उसके बाद कम्पलीट होगा।

बना के कम्पलीट कर देंगे काफी लकड़ी के काफी मजबूत है जोकि हम बड़े - बड़े घरों में डालते हैं। काफी अच्छा --

कम्पली फूलो द्वारा आ बना सजावट की गयी है उसको काफी अच्छा --

ऐसा लग रहा है पिज़्ज़ा शॉप खुला है। मेज़ भी पड़ी हुई है। कुर्सियां भी पड़ी हुई है और काफी शानदार बनाया है किसी ने और लाइट --

यहाँ डेंटिंग पेंटिंग चल रही है। भाई पुताई भी कर रहे हैं इसपे जोकि इसकी पुताई छूट गयी थी और इसका देखिये पेट्रोल का जो ऊपर वाला ढ़क्कन होता है जो ऊपर से लगाया जाता है वो भी गायब है।

जैसा कि मैं देख रहा हूँ। मेरे सामने काफी शानदार जो कि गौतम बुद्ध जी की तस्वीर बनाई गयी है और जो कि देख रहे हैं हम --

घम्म सम्बेलन जो की दिनांक छह दिसंबर दो हज़ार सोलह में मंगलवार के दिन हुआ था और --

जैसा कि मैं देख रहा हूँ मेरे सामने काफी बड़ा देखिये हॉल बनाया गया है। जो कि एक लैब का रूम बनाया गया है। जो कि इसमें कई तरीके के लैब दिखाई दे रहे हैं। छोटे बड़े लैब जो की डॉक्टरों का ये रूम है। काफी साइंटिस्ट लोग जो की इसमें अपने --

जैसा कि मैं देख रहा हूँ मेरे सामने काफी शानदार हवेली बनायीं गई है जो कि काफी बड़े राजाओं महाराजओं ने बनाई होगी क्योंकी हमने इन --

जो भी ये लड़का यहाँ कुछ किसी चीज़ की खोज करने देगा --

और ऊपर से पानी गिरता है इसमें जाता है जो कि नीचे द्वारा जाता है और काफी पेड़ वेड़ भी है जोकि हम देख रहे हैं हमारे सामने काफी पेड़ पौधे खड़े हुए हैं और --

इन्होने टीन भी डाल रखी है। इनसे काफी लाभ और चौतरा भी काफी बड़ा बना रखा है। जो कि बैठने के लिए काफी शानदार बनाया है। ज़मीन में।

इस सोसाइटी के चन्दर सोसाइटी है। जोकि बाहर एक गेट लगाया गया है और इसके चारों तरफ एक बॉउंड्री की गई है।

इस मास्कों से काफी बीमारियों से बचाव कर सकते हैं यदि हम मुँहपर लगाते हैं जैसे कि --

यह हमारे शीश नाग जी का मंदिर जोकि पत्थरों पर भी इनकी तस्वीर बनी हुई है। ऐसा लगता है यह काफी सच्चे महाराज हैं।

भी काफी शानदार काफी अच्छे और काफी सफाई से बिकते है। यानि फ्रेश माल बिकता है मॉल में। जैसा कि हम देख रहे हैं हर फ्रेम में लगाए हैं। हर एक फ्रूट्स है जो की कई तरह के यहाँ फ्रूट्स हैं।